मैं एक दुकान को देख रही हूं इस दुकान में बहोत सारे खिलौने रखे हैं।

पूजा स्थल को देख रही हूं जिसमें बहोत सारे फ्लावर्स है बहोत सारे मंदिरे है बहोत सारे मूर्तियां है छोटी-छोटी --

रेड व्हाइट मिक्स कलर के खंबे बने हुए हैं।

जहाँ अरुण अरुण लिखा है अरुण आइसक्रीम्स कर के --

मैं एक इमेज को देख रही हूँ जिस--

और पेड़ भी देख रही हूं मैं खुला आसमान को--

ब्लैक ब्लैक करके देख रही हूं वॉल पे हैं।

और ये पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ है ये--

वॉल है ऊपर में लाइट्स लगे हैं जिनका रिफ्लेक्सन बन रहा है।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

राईट में एक अंकल खड़े हैं और मैदान में दो--

और बार बार केशाब के नीचे का जल--